इस तस्वीर में एक बेड दिख रहा है।

कुछ झूले नजर आ रहे हैं।

झूले पर कुछ बच्चे बैठे हैं।

पीछे का आसमान सफेददिख रहा है।

इस तस्वीर में--

बहुत टेबल नजर आ रहा है।

बहुत कुर्सी नजर आ रहा है।

एक रेस्टोरेंट का तस्वीर है।

मेडियम पिज़्ज़ा का बोर्ड लगा है।

ये एक पिज़्ज़ा का दुकान है।

एक सीढ़ीनजर आ रहा है।

कुछगुब्बारे दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक टावर दिख रहा है।

टावर के पीछे नीला आसमान दिख रहा है।

उस पे सफेद टंकी दिख --

एक ए_सी दिख रहा है।

ये तस्वीर एकलाइब्रेरी का है।

सभी व्यक्ति गड्ढे की ओर--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

जमीन काला दिख रहा है।

दीवार पेपड़े अक्षरों में--

एक इमारत दिख रहा है।

सड़क पर बहुत लोग दिख रहे हैं।

एक बड़ा दरवाजा भी बना हुआ है।

कुछ बच्चे भी दिख रहा है आसमा --

बहुत मकान दिख रहा है।

एक वाहन नजर आ रहा है।

दो लोग नजर आ रहा है.

दो गाड़ियां नजर आ रहा है ।

यह व्यक्ति गाड़ी साफ कर रहा है।

जमीन नजर आ रहा है पीछे हरी--

आस-पास बहुत इमारतें हैं।

बहुतलोग सड़क परचल रहे हैं।

इस तस्वीर में बहुत--

जिनमें कुछ लड़के और कुछलड़कियां हैं।

पीछे का दीवार काला दिख रहा है।

जिसमें कुछ लड़का दिख रहा है।

कुछ दो पैया वाहन दिख रहा है।

इस मैदान में काफी--

कुछ लोग दिख रहा है।

एक सड़क दिख रहा है।

वाहन चल रहा है।

आसमान सफेद दिख रहा है।

जो बैठा दिख रहा है।

पानी का झरना दिख रहा है।

कुछ महिला और कुछ पुरुष है.

एक बड़ा हॉल दिख रहा है।

कई टेबल दिख रहा है।

एक मकान दिख रहा है ।

मकान का रंग सफेद--

सामने एक बड़ा दरवाजा दिख रहा है।

ठीक नीचे छोटे गमले में कई पेड़ लगे हैं।

बहुत लोग दिख रहा है।

एक इमारत भी दिख रहा है ।

एक तालाब दिख रहा है ।

सामने की ओर कु--

एक हरा पौधा भी दिख रहा है।

एक हवाई जहाज दिख रहा है ।

एक सड़क दिख रहा है।

कर रहा है आसमान अंधेरा--

इमारत केनीचे एक दुकान दिख रहा है ।

पीछे हरा पेड़ दिख रहा है ।

दीवार से टंगा हुआ है ।

एक इमारत दिख रहा है.

सफेद दिख रहा है.

जो मोटर साइकल --

कमरे में बहुत शीशा--

दिख रहा है लाइट का प्रक--

सजी हुई है दीवार पर'--

एक बड़ा गेट भी--

कोने में दिख रहे हैं ।

की ओरदीवार पर एक--

उसके पीछे कुछ वस्तुभी दिख रहा है।

एक गितार भी दिख रहा है एक कुर्सी दिख रहा है यह--

में उपयोग करने वाली वस्तु--

ऊपर कई लाइटें जल रही है।

सड़क के ठीक सामने--